यहां बहोत सारे आदमी लोग भी हैं।

और गोले गोले रोआ लोहा के रेलिंग दी हुई है।

यहां पे लाइटें लगी हुई है।

यह एक परिवार कल्याण अह संस्थान पटना है।

बगल में एक पानी टंकी दिखाई दे रहा है।

यहां पे बहुत हरे भरे पेड़ पौधे हैं।